और ऊपर फैन लगा हुआ है और एक दुकान है।

नीचे ग्रीन मैट है एक बेंच रखी हुई है।

सड़क दिखाई दे रही है सामने एक मां शाकंभरी विश्वविद्यालय का बोर्ड लगा हुआ है।

एक प्लास्टिक की कुर्सी है और एक बेंच पर सरस्वती माता की तस्वीर रखी हुई है।

सामने कुछ व्यक्ति बैठे हैं और एक लाल कलर की कुर्सी दिख रही है और एक मेज दिख रही है जिस पर सफेद कपड़ा डाले हुए--

गेंदे के फूल की मालाएं हैं पीले और लाल कलर की और संतरे कलर की और स्टील की रेलिंग है।

पीले कलर के फूल रखे हुए है पीछे शटर दिखाई दे रहा है।

और एक बच्चा हाथ में कान पकड़े हुए हैं और सामने खम्मा दिख रहा है और आम का पेड़ है।

गोदरेज दिख रही है जिसके ऊपर कुछ बॉक्स रखे हैं और एक अलमारी दिख रही है।